एक टेबल और कुछ बोट लगे हुए हैं पीछे की तरफ दीवार है जो येल्लो कलर से पुती हुई है।

ये एक हाईवे है जिस पे एक रेड कलर की फोर व्हीलर जाती हुई दिखाई पड़ रही है।

ऑरेंज और व्हाइट और ग्रे कलर कि पास में एक फोर व्हीलर खड़ी हुई--

कुछ पेड़ पौधों की परछाई पानी में दिखाई पड़ रही कुछ सूखे पेड़ पौधे--

कलर की टी शर्ट पहने हुए एक आदमी पास में खड़ा है।

ऊपर की तरफ एक कैमरा लगा हुआ एक बाहर निकलता हुआ आदमी दिख रहा है।

एक आदमी व्हाइट कलर की शर्ट पहने हुए काफी दूरी पर दिख रहा है।

यह एक छठ पूजा स्थल है जिसमें गन्ने गड़े हुए हैं जिसमें कुछ कपड़े बंधे हैं जो रेड कलर के हैं और ग्रीन कलर के हैं।

ड्रेस पहने हुए दिख रहे हैं दो मेज रखी हुई हैं जिन पे एक रेड कलर की पन्नी रखी हुई है।